यहाँ पर एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है जिसके पीछे में एक लाल कलर की मकान दिखाई दे रही है और --

पेड़-पौधे दिखाई दे रहै है और बहोत सारी भूमिया देखी जा सकती है।

दरअसल यह रात्रि का समय नहीं है और आकाश में --

यहाँ पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर बहुत सारे भेड़ीयो के चित्र बनाये गए है ।

यहाँ पे और भी तरबूज वगैरह देखे जा सक --

अगल - बगल में बोहोत सारे यहाँ पे बसे दिखाई दे रही है सामने एक व्यक्ति जाता हुआ नजर आ रहा है जिसके पीठ पे एक बैग है।

बहुत सारे मैडल को रखा गया है सामने की तरफ मे कुछ बॉक्सेस रखे हुए दिखाई दे रहै है सामने और कराकेट दिखाई दे रहा है ।

उसके बगल मे और भी कुछ औरते खड़ी हुई देखी जा सकती है।

निचे के तरफ कुछ घासे भी देखी जा सकती है ऊपर नीला आकाश है जिसपे सन को भी देखा जा रहा है।